कुछ पैक करके भी सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं अगल बगल में दूसरी भी दुकानें हैं तो ये आलू प्याज की दुकान है।

बच्चे किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं स्टेज पे बहोत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं कुछ गे--

पार्क नज़र आ रहा है कोई पार्क है बहुत साफ सुथरा पार्क भी नज़र आ रहा है स्टील की गेट की बैरिकेटिंग भी की हुई है झंडे वंडे नज़र आ रहे है।

कहीं पे ये जो खुदाई वगैरा में निकलते है उस तरह की प्रतिमा है जो कहीं किसी हॉल में संग्रहालय में रखी गई है देखने में बहोत खूबसूरत लग रही है भगवान बुद्ध की प्रतिमा--

उनकी खेती की जा रही है और खेत से लोग गेंदे के फूल तोड़ तोड़ कर के इकट्ठा कर रहे हैं जो कि पूजा के समय में ये गेंदे बहुत पूरे भारत भर में सप्लाई हो--

युवा केंद्र है जहां पर लोग योगा सीख रहे हैं एक गुरुजन है जो कि माइक पे कुछ उद्घोषित कर रहे हैं और बाद बाकी लोग मैट बिछा कर करके--

किसी बाजार का ये दृश्य नज़र आ रहा है जहाँ रिक्शेवाला कुछ लोगों को बैठा कर के लेगता हुआ नज़र आ रहा है कुछ बाइक सड़क --

यह एम_पी गवर्नमेंट का बोर्ड लगा हुआ है मध्य प्रदेश हस्त शिल्प एवं महतगर्गा विकास निगम लिमिटेड --

गुरुद्वारा की तस्वीर है यह गुरुद्वारा बहोत खूबसूरत गुरुद्वारा सफेद कलर के पेंटिंग की हुई है गुंबद वगेरा बने हुए हैं।

ऑटो पार्ट्स की दुकान नजर आ रही है शिव ऑटो पार्ट्स भगत साइकल स्टोर --

गुरुद्वारा का दृश्य नजर आ रहा है यहां बहोत सारे बहोत बड़ा हॉल है और कुछ लोग बैठे हुए हैं बालों में--

मुर्गी जो है वह आपको नजर आ रही है एक मुर्गी है और काले मैदान है कोई लग रहा है कि कोई पार्क वगैरह है यहां पे इन सबको रखा जाता होगा।